और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं । यहाँ पे एक लड़की नत्य कर रही है |

और एक बड़ा-सा पेड़ गिरा हुआ है इस तालाब में इसके चारो ओर --